नीला सफ़ेद काला है --

के उधर-उधर पे कुछ ट्रेन का पटरी है। उधर में स्टेशन है।

और उधर में एक टाइल्स सा दिख रहा है और एक पानी का बू दिख रहा है।